और यहां बच्चों के खिलौने भी मिलते हैं।

खेत है और यह बहोत ही बड़ा है और यहां--

उन पर कुछ फ्रूट और सब्जियां उगी हुई है और यहां पर एक--

और यहां प्लास्टिक के प्लेटें बनाई जाती हैं।

यहां की डेकोरेशन लड़ियों से की गई हैं यहां रंग बिरंग की लड़ियां जग रही हैं और ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक कैफे है और यह बहोत ही बड़ा है और यहां बहोत सुंदर डेकोरेशन की गई है।

जोकि बहोत ही बड़ी है उसका पानी हल्का ग्रीन कलर का है।

यहां पर बहुत ही अधिक से अधिक मात्रा में चेयर्स पड़ी हैं।

फेस वॉश क्रीम क्लिप्स हेयर बैंड और रबर्ड्स --

और यहां कुछ बाइक्स भी खड़े हैं और एक रेडी खड़ी हैं।

वहाँ पर एक औरत है जिसने साड़ी पहनी है और यहां फूल वाले भी होते हैं।

और यहां बेंचेज पड़े हैं उसके पास बहुत अधिक मात्रा में चेयर्स पड़ी है यहां पर वाइन कोल्ड ड्रिंक --

की चीजें भी मिलती है यहां की पेस्टी --

और यहां बाहर बैलून के डेकोरेशन की गई है।

वह बैलून का कलर पिंक और रेड है और में बी पिंक और व्हाइट भी है और वहां बहुत सारे --

और बहुत ही हरि भरी घासे दिख रही है।

उनके हाथ में पेन और कुछ व्हाइट कलर की शीटें हैं और वह चेयर्स पर बैठी है वहां पर वाइट पेंट किया हुआ है।

उसकी लाइनिंग नेवी ब्लू से की हुई हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है जी जिसका नाम यू_के पिज़्ज़ा --